और फिर प्रेसर जब कम जाता है तो ये नीचे आ जाता है और रात को देखने मे बल्ब जलता है रात को देखने मे बहुत ही खूबसूरत लगता है बढ़िया लगता है।